देखिएगा सामने यहां पर एक फैक्टरी दिखाई दे रही हैं जहां पर देखिएगा दो मजदूर काम करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में दुखिएगा सामने यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ लोग नहाते हुए नजर आ रहें हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक ओर हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ बच्चे ऊपर हाथ करके खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है और यहां पर एक मकान बनता भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर कई सारे पौधे आते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक स्टूडियो दिखाई दे रहा है जहां पर गेट खुला हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक मकान बनता दिखाई दे रहा है जहां पर एक आदमी भी एक टांगे खड़ा नजर आ रहा है।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

इस इमेज में सामने यहाँ पर एक बड़ी सी जिम दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जहां पे देखिएगा शिल्प शाला लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बोर्ड लगा नजर आ रहा है जिसमें मिश्रु सादरा केंद्र समिति जयपुर लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है और पीछे खूबसूरत सा बंगला भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर एक लड़के के हाथ में झंडा भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जहां पर बाहर सड़क पर एक कार भी खड़ी नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और बाहर दो तीन लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर दिखीयेगा गमलो में ढेर सारे पौधे लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पर बाहर एक बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और यहां पर भगवान की बड़ी सी मूर्ति भी झांकी भी नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और ऊपर सेठ बन्नी लाल जी ढोलिया धर्मशाला लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर खिलौने की गिफ्ट शॉप दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कई सारे गिफ्ट रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक ज्वेलर्स की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर अंदर कई सारी ज्वेलरी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर कुछ दुकानें दिखाई दे रही है और यहां पर एक बोर्ड भी लिखा हुआ है जिस पे गुर्जर छात्रावास लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है और एक यहां पर बोट भी नजर आ रही है।